यह पार्क है पार्क में एक बोर्ड लगा हुवा है और बहुत सारे पेड़े भी है ग्रीन और ब्लेक कलर के है यहा बहुत सारे लोग भी बेठे हुए है।

नाव का कलर ब्लू है एंड रेड है व्हाइट है सूरज दिख रहा है उसका कलर व्हाइट एन्ड यल्लो है।

ये हे साइकिल पे है एक कार खड़ी हुई है और कुछ ऑटो भी खड़े हुऐ है ठेले खड़े हुए हैउन पर कुछ सामान रखा हुआ है ।

फनीचर बिछा हुआ है वो ग्रीन कलर का है कुर्शी रखी है वो ब्लेक कलर की है।